एक दुकान दिखाई दे रही है जिसमे एक बाइक रखी हुई है बाइक मैदान मअंदर रखी हुई है शोरूम के